लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर माना जाता है यह बहुत चालक होता है यह हमें जंगलो में दिखता है।

जिसमें लोग बैठ के बसों का इंतज़ार करते हैं और अपने जगह तक जाते है।